इस केक पर एक हार्ट शेप में अ डेकोरेट किया गया है हार्ट लगाकर डेकोरेट किया गया है।

लाइट्स डली है ग्रीन कलर की लाइट्स आगे डली है आगे साइड में है।

फर्नीचर पर कुछ डिब्बे रखे हैं डिब्बे में शेव नमकीन --

इस इमेज में एक मुफ़्ती अ शॉप को दिखाया गया है इस शॉप पर --

पुल के ऊपर गोल्डन कलर का अ कुछ दिखाई दे रहा है।

नारदा सैंड का ढेर लगा हुआ है।